जो कि ब्लैक और रेड कलर में हैं यलो कलर में हैं डंबल रखे हुए हैं ।

एक पुरानी इमारत दिखाई दे रही है।

अ उसका नाम है प्लस टू उच्च विद्यालय।

ये बरगद का पेड़ दिखाई दे रहा है।